पास में एक और पैड लगा हुआ है बोर्ड में--

दो लड़कियां हैं दो लड़के हैं।

के नीचे लिखा हुआ रामकृष्ण मिशन शिशु मंदिर--

और पास में एक लेडिस खड़ी हुई है जिसने येलो कलर की साड़ी पहन र--

जैसे कि मैं देख पा रही हूं ये एक गार्डन है।

पेड़ और भी लगे हुए हैं।

व्हाइट और ग्रे कलर के उसने कपड़े पेहने हुए हैं।